खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है।

यह सामने एक बहुत बड़ी इमारत है।

जिसका रंग सबज है।

ये एक मंदिर है जिसके सामने बहोत --

यह एक नर्सरी है जिसमें ।

ये एक बिजली का --